यह चित्र एक कैफे की है।

इस चित्र में कई सारे आदमीया फोटो लेते हुए नज़र आ रहे हैं।

ऊपर दिखाए गए चित्र में एक क्यू_आर स्कैनर नजर आ रहा है।

यह चित्र किसी पूजा की दिखाई पड़ती है।

यह चित्र एक दुकान की दिखाई पड़ती है।

ऊपर मार्केट के अंदर बहुत सारे लाइट्स जल रही है।

इस चित्र में बिल्डिंग के दीवार का रंग सफेद है।

यह चित्र एक बेडरूम की है।

इस चित्र में एक पानी की बोतल नजर आ रही है।

इस चित्र में एक पूजा दुकान नजर आ रहा है।

यह चित्र एक रेस्टोरेंट की दिखाई पड़ती है।

यह चित्र एक रूम की दिखाई पड़ती है।

मकान के पास कई सारे बच्चे खेल रहे हैं।

इस चित्र में एक लाल रंग का हवाई जहाज नजर आ रहा है।

कंटेनर रंग संतरे रंग का है।

इस चित्र में कई सारे किताब नजर आ रहे हैं।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

इस चित्र में काई सारे कुर्सियां और टेबल नजर आ रहे है।

यह चित्र एक रिसेप्शन हॉल की है।

इस चित्र में एक गोल्डेन कलर का सोफा नजर आ रहा हैं।

ऊपर दिखाए गए चित्र में बहौत सारे पेड़ और छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र एक सिलाई दुकान की है।

ऊपर दिखाए गए चित्र में बहोत सारे बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं।

यह चित्र एक वॉशिंग शॉप की है।

सड़क के ऊपर कई सारे गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में कई सारे कुर्सियां नजर आ रही है।

उपर दिखाए गए चित्र में एक आदमी टी_वी देखते हुए दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक डांस स्टेज की है।

इस चित्र में कई सारे महिला डांस करते हुए दिखाई दे रहे है।

ऊपर दिखाए गए चित्र में कई सारे लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।